पत्तिया दिखाई दे रही है आसमान मे बादल दिखाई दे रहे है बॉउन्ड्री दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग है जो कि सफेद रंग की इसकी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं पेड़ दिखाई दे रहें हैं पेड़ों पर हरे-हरे पत्ते लगे हुए हैं चारो तरफ मिट्टी --

ये एक पहाड़ी इलाके का दृश्य है जहां पर चारों तरफ पहाड़ी दिखाई दे रही है चट्टानें दिखाई दे रही हैं।

परदे लगे हुए हैं मेज पर काफी सारा समान रखा हुआ है।

और ब्राउन कलर का चेक कोट पहना हुआ है कुछ लिखता हुआ नज़र आ रहा है और उसके हाथ में एक पेपर लिया हुआ है दो तीन लोग --

यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो कि सफेद रंग की है जिस पर --

ये एक रोड का दृश्य है जहां पर एक मोटर साइकिल --

जो कि छत दिखाई दे रहा है वहाँ पर लाइट लगी हुई है पंखा दिखाई दे रहा है जो कि काले रंग का है।

और सर पर टेप लगी हुई है आस-पास बहुत सारी मात्रा में समान दिखाई दे रहा है।

मंदिर के द्वार पर काफी ज्यादा आकृति बनी हुई है सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं सीढ़ियों पर अलग-अलग रंग --

अलग-अलग रंगों से चित्रकारी की गई हुई है दो गुब्बारे लगे हुए हैं गुब्बारे --

यह एक पहाड़ी एरिया है जहां पर पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है।

पोस्टर लगे हुए हैं उन पोस्टरों पर अलग रंग की आकृतियां --